मछलियों की शॉप पर बहुत भींड़ लगी हुई है. सात आठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दो आंटियां मछली साफ करते हुए दिखायी दे रही हैं।

कुछ लोग मटेरियल डाल रहे हैं| यहाँ पर छोटे छोटे सरियों से कुछ बन रहा है।

यहाँं बहुत भीड़ भड़ड़का हो रहा है जैसे कोई जतरा निकलता हो।

यह एक डांस क्लास है । डांस क्लास में सर अपने बच्चों को डांस सिखा रहें हैं सभी बच्चे एक ही स्टेप करते हुई दिखाई दे रहे हैं कई सारे बच्चे मौजूद हैं।

लोग नीचे ही मछलिया बैठ बेचने बैठ गयें है | एक आंटी फ़ोन पर बात कर रहीं हैं। एक अंकल येलो शर्ट में गुज़र रहें हैं।

यह चिड़िया की पिंजरा है पिंजरे में लव बर्ड्स रखी हुई है लव बर्ड्स ग्रे येलो या ग्रीन कलर की रखी हुई है।

एक थम्स अप की बॉटल है और एक बिसलेरी की बोटल है और एक टिशू का बॉक्स भी वहां पर रखा हुआ है।

अ यह सायद दूध की दुकान दिखती है।

यह एक बड़ा सा घना सा पेड है जोकि एक गोलचक्र के अंदर है।